सब कुछ मि बिल्कुल ठीक नहीं है।

ये लाल रंग चिड़िया रंग--

और बहुत अच्छी रंगों में --

यह चित्र के अंदर से जाने वाली है।

बिल्कुल टिक नहीं सकता है ये देने वाली सभी अच्छी तरह होती है।

डस्टबीन में लाल रंग में होती हैं।

एक अच्छे वाले के क्रिसमस सेलिब्रेशन होती है अच्छी तरह लाल रंग में डेकोरेशन --

चित्र के अंदर से जाने वाली है।

बर्थडे सेलिब्रेशंस होती है ये अच्छी तरह से बहुत बहुत लड़का लड़कियों --

एक टैंक होते हैं।

ये लाल रंग में होती है।

फिश वर्ल्ड आक्वेरियम होती है।

बैलून रहती हैं फैन बिल्कुल ठीक नहीं सकता हैं।

अतिश्योक करते है।

बहुत बहुत लड़कियां होती है।

ये बिल्कुल टीक नहीं सकता है।

यह चित्र के अंदर से जाने वाली है।

एक बड़ा बिल्डिंग होती है।